बहुत सारी लाइट्स बी लगी हुईं है।

एक झुमर लगा हुआ है कांच का।

ये एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप --